दो कंबल भी रखे हुए हैं साथ में पीछे की दीवाल सफेद रंग में रंगी गई है।

जोकि बच्चे का बड्डे मना रहे हैं।

यहां पर ढेर सारे लाल और सफेद रंग के गुब्बारे भी टंगे हुए हैं।

यहां पर एक गोल्डन कलर मे लपेटी चादर से टेबल रखी हुई हैं।

इसमें जमीन का रंग काला दिखाई दे रहा है।

आदमी ने काले कलर का कोट पहना हुआ है।

यहां पर ढेर सारी बाइक भी खड़ी दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक फूल मंडी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक दो लोग भी दिख रहे हैं।

एक पटरी यहां पर खाली भी दिखाई दे रही है यहां पर एक कमरा भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में बहोत सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बड़ी सी जिम दिखाई दे रही है।

इसमें जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

साथ में ही छत पर ढेर सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

इस फोटो में एक वाटर पार्क नजर आ रहा है।

यहां पर तीन चार लोग खेल रहे हैं।

नीचे ही बहोत ढेर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में देखके समझ आ रहा है।

यह एक मछली मार्केट है यहां पर लोग मछलियां खरीद रहे हैं।

यहां पर काफी ज्यादा लोगों की भीड़ है यहां पर लोगों ने मछलियां नीले कलर के पन्नी पर रखी हुई हैं।

इस फोटो में ढेर सारे लोग नज़र आ रहे हैं।

पीछे ही छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे ही ढेर सारे हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग नीला एवम सफेद दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक फूल का पेड़ बेचने वाला आदमी दिखाई दे रहा है।

पीछे नीले और गुलाबी कलर का पर्दा लगा हुआ है।

पीछे ही एक बड़ा सा हरा भरा पेड़ भी दिखाई दे रहा है पीछे एक दो घर भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक बस स्टैंड दिख रहा है।

यहां पर छोटे छोटे घर दिख रहे हैं।

दो चार ऑटो भी यहां पे खड़े हुए हैं।

साथ में ही यहां पर बस भी खड़ी हैं यहां पर लोग भी बहोत ढेर सारे खड़े हुए हैं।

वहां पर दो तीन आदमी भी खडे हैं।

वहां पर एक दो पहिया वाहन भी खड़ा है।

और सामने एक काले कलर का डस्टबिन भी रखा है।

इस फोटो में एक कमरा दिखाई दे रहा है जहां पर चार खंभे गड़े हुए हैं।

पीछे दीवाल का रंग गुलाबी और लाल है यहां पर एक हरे कलर की चादर भी बिछी हुई है।

इस फोटो में एक पार्क नजर आ रहा है।

पीछे ही ढेर सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

साथ में ही आसमान का कलर सफेद नजर आ रहा है।

इसके बीच में एक आदमी झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक छोटी सी रोड है बगल में छोटा सा गार्डन है।

यहां पर हरे भरे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में तीन आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में बहोत सारे हरे भरे पेड़ और पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इन पौधों के बीच से एक छोटा सा रास्ता भी जा रहा है।

इनके पीछे की दीवाल सफ़ेद कलर की है।

इनके पीछे एक गेट है जिसका रंग काला है।

और जो जमीन है उसका रंग भूरा है।

यहां पर दो-तीन लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर दो तीन ऑटो भी खड़े हैं।

इस फोटो में एक नीले कलर का स्वराज कंपनी का ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

जिसने अपने हाथ में एक कप में चाय पकड़ी हुई है।

उसके पीछे की दीवाल लाल और भूरे कलर की समझ में आ रही है।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

आगे बहुत ढेर सारी घास है जिनका रंग हरा है।

आसमान का रंग नीला और सफेद है।

इस फोटो में एक दो छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर तीन चार लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे है।

यहां पर एक दो ड्रम दिखाई दे रहे है जिनका रंग पीला और काला है।

यहां की जमीन भूरे रंग की है।

मीन पर एक चादर बिछी है जिसका रंग हरा है।

और पीछे जो पर्दे लगे हुए हैं उनका रंग नीला है।

बीच में एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में पीले और लाल कलर का झंडा है।

पीछे दो तीन पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

आसमान का रंग सफेद दिखाई दे रहा है।

जो की एक पिंजड़े में बंद है पिंजड़े का रंग काला है।

पिंजड़े के पीछे ही हरी भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में तीन चार आदमी दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में एक टी_वी का शोरूम दिखाई दे रहा है जो की एल_जी कंपनी का है।

इस फोटो में एक कार्यालय दिखाई दे रहा है जिसमें आठ दस लोग काम कर रहे हैं।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

जिसका बोनट खुला हुआ है यहां के पीछे दीवाल पर ग्रे कलर की पुताई हुई है।

पीछे ही इनके एक पीले और सफेद कलर का पर्दा भी लगा हुआ है।

पीछे की जो दीवाल हैं वो सफेद रंग में पोती गई हैं यहां पर कुछ टी_वी मॉनिटर भी रखे हुए हैं।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

आसमान का कलर नीला एवं सफेद समझ आ रहा है।

जो की योगा का एक आसन कर रहे हैं।

इन्होंने जमीन पर योगा की मैट भी बिछा रखी है।

जो के अलग अलग रंग की हैं जमीन का रंग भूरा दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक मछली मार्केट दिख रहा है।

जहां पर ढेर सारे लोग खड़े हैं।

यहां पर अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं पीछे कुछ साइकिलें भी खड़ी है।

इसका गेट नारंगी कलर में पोता गया है।

इसके पीछे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हरे भरे हैं साथ में आसमान का रंग सफेद है।

इस फोटो में एक फूल मंडी दिखाई दे रही है।

यहां पर ढेर सारे लोग भी इकट्ठा हुए हैं यहां पर सफेद कलर की बोरियां रखी हुई हैं।